इसमें सोफा रखा गया है और इसमें एक आदमी खड़ा है।

इसमें छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं।

कुछ लड़कियां डांस कर रही हैं और अन्य लोग इसका नजारा ले रहे हैं।

मोर किसी जगह पर बैठा हुआ है उसके ऊपर बास का डंडा है।

फिर मेज पर एक पी_सी रखा गया हैं।

जिसमें हर प्रकार का समान मिलता है।

कपड़े भी हैं और खाने पीने की वस्तुएं भी हैं।

और कुछ लोग खाना खिला रहें हैं इसमें एक गाड़ी खड़ी हुई है।

इसमें खाने का सामान पीने का सामान नहाने का सामान और भी अन्य सामान जरूरत का सामान रखा गया है।

यहां पर पर्दे भी लगे हुए हैं।

इसमें जो मूर्तियां रखी गई हैं।

इस तस्वीर में दो चार आदमी नजर आ रहे हैं।